और यहाँ पर एक फ्रूट शॉप जैसी दिखाई दे रही है उस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ भी है।

और दिखाई दे रहा हैं यहाँ पर एक चेयर भी दिखाई दे रही है जिस --

और ब्लू - ब्लू खम्बे वगेरा दिखाई दे रहा है साइड में बोहोत सारी जनता वगेरा दिखाई दे रही है।

कलर में लिखा हुआ है ग्रीन में लिखा हुआ है ब्लैक कलर में भी लिखा हुआ है।

और पीछे की तरफ छोटे-छोटे घर बिल्डिंग वगेरा दिखाई दे रही है।

और व्हाइट - व्हाइट से पट्टे खींचे हुए हैं रोड पर।

और यहाँ पर अ बेंच पर बहोत सारी बाल्टी वगेरा रखी हुए हैं।

ट्रीज वगैरा दिखाई दे रहे है। ये मन रेड कलर के मंदिर वगेरा दिख --

बिल्डिंग वगैरा दिखाई दे रही है। ट्रीज दिखाई दे रहें हैं। पोस्टर वगैरा दिखाई दे रहा है।

क्रीम वगेरह दिखाई दे रही है और साइड में एक मशीन वगेरह भी दि --

यह एक बड़ा-सा ग्राउंड जैसा दिखाई दे रहा है यहां पर बहोत सारे --

और यहा पर अ साइड में जाली दिखाई दे रही है। यहा पर एक लड़का खड़ा हुआ है।